लड़ा भी छोड़े गए ऐं पड़दा मारा गया मटब की थरा --

इस सेट्स बनाए गए हैं और जूलरी को रखा गया है शेल्फ में भी ज्वेलरी है कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं।

ऐ एम अ स्कैनिंग पे रखे गए हैं पॉड भी है फ्लावर्स भी लगे हुए हैं येलो कलर के हैं।

और परनिया पड़े हुए हैं यहां पे दो ट्रेन भी दिख रहे हैं ऊपर टीन शेड मारा गया है।

मअ श्री लक्ष्मी नारायण का --

और यहां पे लाइट के खंभे बहुत सारे फोकस --

और यहां पे ऊपर लाइटों की झूमर छोड़े गए हैं और ऊपर यहां पे बहोत सारी--

यहाँ ऊपर बोहोत सारे बदख दिख रहे हैं पूरी नदी में बदख ही बदख है।

बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं और बड़े बड़े बहुत सारे बिल्डिंगां भी है।

यहाँ पे बैठने के लिए कट्टा बनाया गया है नीचे यहाँ पे --

तालाब की तरह है यहां पे बहोत सारे--

चेयर्स टेबल डाले गए हैं बाजू में पूरा टीशर्ट का है सामने यहाँ पे पर्दा मारा गया है बाहर यहाँ एक --

ये एक यहाँ पे गेम जोन की तरह है छोटे बच्चों का --